जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर ये पार्क है जो की यहाँ छोटे-छोटे --

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर ये रोड है जो की सिलेटी रंग की है।

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर एक खंडहर है जो कि यहाँ पर मिटटी का बना है तथा यहाँ पर ये --

गेट है वो काले रंग के है तथा यहाँ पर जो जमीन है वो भूरे तथा आधे में।

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर ये बैठक है जो कि यहाँ जमीन जो है वो सिलेटी रंग की है।

अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तथा उन्होंने आर्मी की वरदी पहनी है।

कुछ लोगों ने सभों में माक्स लगाया हुआ है यहाँ पर इसने --

फव्वारा है जो कि यहाँ पे सफ़ेद है उसके अंदर लाइट जल रही है हरे रंग की लाल रंग की।

पता यहाँ पर बोरियाँ भूरे रंग की रखी हैं यहाँ की जो फर्श है --

तथा एक आदमी जो पीछे सजावट कर रहा है फूलो से जिसमें।